यहां पे एक लेडिस --

हमें यहां पे स्लाइडें भी नजर आ रही हैं।

पीले कलर की नंबर प्लेट लगी हुई हैं।

यहां पे बच्चो का एक झूला नजर आ रहा है जो रेलगाड़ी जैसा रहता है।

जहां पे जीम के लिए मशीन भी रखी हुई है।

यहां पे एक एल.ई.डी. भी नजर आ रहीं हैं।

यहां पे बहुत सारी कॉपी किताबें नजर आ रही हें।

यहां पे हमें दो झंडे नजर आ रहे हैं।

सड़क के उस पार हमें बिल्डिंग नजर आ रही हें।

यहां पे हरी घास दिख रही हैं।

ऐ.सी. भी लगा हुआ है।

एक दरवाजा भी है जिसपे नीले कलर का बोर्ड लगा हुआ है।

इस इमेज में एक मैदान नजर आ रहा है जहां पर रेती का ढेर है।

दो पंखे भी जो सफेद कलर के हैं।

यहां पे बहोत सारे लोग भी हमें दिख रहे हैं।

एम.एस. लाइब्रेरी एंड सेल्फ सर्विस सेंटर लिखा हुआ है ।

इमेज हमें एक हॉस्पिटल की नजर आ रही हें।

यहां पे एक नाव भी है।

यहाँ पे हमें एक फीसल पट्टी भी नजर आ रही है ।

नीचे की साइड शटर दिख रहे --

इसने सफेद कलर के कपड़े पहने हुए हैं।

इस इमेज में हमें एक दुकान नजर आ रहीं हें।

जिसमें बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

एक कार पे पीली कलर के नंबर प्लेट लगी हुई हैं।

जो ग्रे कलर की है।

जो सफेद और हरा कलर की हैं।